और इसमें आप देख सकते हो की साफ सफाई का बिल्कुल बहोत अच्छे से ध्यान रखा हुआ है।

आ इंस्ट्रक्शन होते हैं मशीन होती हैं वो आई है इसमें नई नई।

और एक आदमी है जो डंडे को ले के खड़ा है जिसके परछाई दीवार पर दिख रही होगी तीनों की धर्मशाला बनाई हुई है ये गौशाला--

और इसमें आप देख सकते हो कि कितने अलग अलग तरह के इंटीरियर डिजाइनर किया हुआ है इसमें डिजाइनिंग है इसमें।

बहोत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं और ब्लू कलर का गेट है जिसमें ताला लगा हुआ है अभी बंद है।

ये ऑफिस कर्नाटक में है ये कर्नाटक का स्पेशल ऑफिस है ब्रांच है।

ये रोहतक आयरन एंड स्टील वेल्डिंग वर्क्स की शॉप है।

इस पार्क में काफी सारे कपल्स और बच्चो के साथ फैमिली आती है बहोत अच्छा पार्क है ये ये रोहतक मे है।

ये हरिओम कार्ट्रेस की शॉप है।

और ये यहां पे जाते ही सब बहोत अच्छे से सुनवाई करते है बहोत अच्छे से आपकी हर एक काम में मदद करेंगे यहां की जो अ एंप्लॉई है।

लस्सी मैंगो लस्सी मिल जाएगी अ फ्रेश क्रीम मिल जाएगी आपको--

वा और आप को अअ फूव्वारे जो बाथरूम में लगते है नहाने के लिए।

ये एक शोरूम की ओपनिंग की तैयारी चल रही है जिसमें काम चला हुआ है अभी और ये है जिओ का ये पटना में है।

एक राइट साइड जरा है। एक लेफ्ट साइड जा रहा है। राइट वाले रास्ते पे एक आदमी है जो चल के जा रहा है।

और सबसे अच्छी बात है की इनकी क्वालिटी बहोत अच्छी होती है और ये काम बहोत अच्छे से करते हैं अपना--

और लेडीज ने हाथ जोड़ के अह आंख बंद करके विशेष मांग रही है प्रार्थना कर रही है बच्चा अपनी मां की तरफ देख रहा है और बहुत ही ज्यादा --